सामने की ओर एक इस्टेज भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पर कई सारे पुरुष दिख रहे हैं।

यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

सामने की ओर आसमान दिखाई दे रहा है।

ऊपर की ओर आसमान भी दिख रहा--

यहां पर कई सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हे।

जिम में कई सारा सामान दिखाई दे रहा है।

दीवार पर क्रीम कलर भी दिख रहा है।

दीवार पर कई सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक फूल दिखाई दे रहा है।

नीचे की ओर कहीं सारी पत्तियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ऊपर बड़ा सा आसमान दिखाई दे रहा है।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

पीछे की ओर कई सारा पानी भी दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां पर कई सारे पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

रोड पर कई सारे वाहन दिखाई दे रहे हैं।

शॉप पर बाटा लिखा हुआ दिख रहा है।

बोर्ड पर श्री धारेश्वर हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

सामने की ओर रंग बिरंगे झंडे भी दिख रहे हैं।

ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई सारे पुरुष दिख रहे हैं।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

सामने की ओर सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर आसमान भी दिख रहा है।

सामने की और वहांदे दिखाई दे रहे है।

सामने की ओर लाइट भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक पुरुष का पेर दिख रहा है।